इस छेत्र मे हरे हरे पेड़ बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं नीचे की तरफ एक नीली रैलिंग बनी है जहाँ बीच मे फॉउन्टेन चलता होगा और सामने सूरज डूबता नजर आ रहा है कुछ व्यक्ति खड़े हुए बातें कर रहे हैं।

उस चित्र मे एक नीले आसमान आसपास हरे पेड़ और बीच मे दिखाई दे रहा है दो बच्चे खेलते नजर आ रहे हैंजो बहोत सुंदर लग रहा है।